इस चित्र में हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा हे ।

और एक सफेद टेबिल और काली कुर्सी दिखाई दे रही है और लकड़ी के दरवाजे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक शोरूम दिखाई दे रहा है जो कि कार का शोरूम है एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक नर्सरी दिखाई दे रही है।

एक सफेद रंग का ट्रक दिखाई दे रहा है।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

और एक पेड़ पे लाल फूल दिख रहे हैं।

और बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गा गाड़ियां दिख रही हैं नीला और सफेद पुताई नजर आ रही है।

सामने हमें फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दिख रही है।

उनके गले में प्लस का साइन डला है।

इस चित्र में एक कॉलोनी दिखाई दे रही है जहाँ एक बड़ा पार्क हमें नजर आ रहा है।

रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक चाय की खेत दिखाई दे रही है।

काफी सारे बुंदे और अंगूठियां रखी हैं।